फिर पेड़ वेड कुल लोकत बा चारो ओर लाइट वाइट एकदम लागल ह फिर आस पास घरवो लोकत बा |

एक ठो बिल्डिंगवो लउकत बा सामने एकदम। एक ठो पेड़वो लउकत बा जेमे पत्ती अत्ती कुल कम बा।

एक बिल्डिंग खूब बड़ा लौकता। जेकर लंबाई चौड़ाई बड़ा बा। फिर पार्किंग की जगह बा। कुल गाड़ी वाली रखे खातिर फिर बच्चन बच्चन कुल झुलत हवन।

रात के समय बा फिर सामने तीन गो बच्चन के स्कूल के बस लउकट बा बाइको साइड में लउकत बा पेड़ों लवकट ह।